एक दीवार जिस पे अं कार्टून बने हुए हैं आर_जे लिखे हुए हैं दो बलून उड़ रहे हैं।

तो रेड कलर लाइटिंग की हुई है एक बॉटल रखा हुआ है एक सॉस का बोटल रखा हुआ है।

एक पुरानी हवेली जिसकी सीढियों पे दो लड़के जा रहे हैं एक की पीली टी शर्ट पहनी हुई एक शर्ट पहना हुआ है एक हाथ पीछे किया हुआ है।

एक छोटा सा होटल जिसमें एक व्यक्ति हिसाब कर रहा है एक बाल्टी रखी हुई है एक मटकी रखी हुई है पीछे कुछ कुरकुरे टंगे हुए हैं।

अच्छा सा बनाएं पाय पाइप लगा के बनाया हुआ एक छोटा सा झोपड़ा है कुछ बर्तन रखे हुए हैं कुछ गुटके टंग रहे हैं।

एक हरा भरा मैदान है जिसमें कुछ हरिन जो कुछ खा रहे हैं।

और लड़का पानी दे रहा है वो गार्डन हरा भरा है सामने खिड़की लगी है ब्लैक कलर की एक वाइट कलर का घर है।

एक सामने ए_सी लगी हुई है एक मशीन है पीछे एक दरवाजा है लड़का है जो ले के खड़ा हुआ है नीचे कालीन बिछाई हुई है।

और बच्चे एक लड़की को हाथ में लिए हुए डांस करवा रहे हैं।

एक डिजाइन बनाई हुई है डिजाइन पे दो व्यक्ति काम कर रहे है एक नीचे बैठा है एक व्यक्ति उपर बैठा हुआ है डिजाइन कर रहा है।

मुझे मालाएं दिख रही है व्हाइट कलर की ऑरेंज कलर की पीछे दो अलग अलग कलर की मालाएं दिख रहे है मालाएं अलग अलग कलर की रखी हुई है।

बाहर एक बैठने के लिए कुछ चेयर बनाई हुई है एक हरे कलर की टंकी है एक ज जाली का कुछ बनाया हुआ है सड़क बनाई हुई है।